लाइट चल रही है जो दिखाई दे रही है छोटी छोटी --

बॉल रखी हुई है लाल है ऑरेंज है सफेद बॉल है।

ये एक ऑफिस है और ऑफिस के पीछे दीवार पे बैनर पे कुछ लिखा हुआ है एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है।

यह एक दुकान है और यह दुकान चीनी की दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारे --

सफेद लाइटे जल रही है नीचे लाल कलर का चोकर कोना दिखाई दे रहा है और यहां पे बहुत सारी गैलरिया और खिड़कियां लगी है।

पौधे लगे हुए है जो फूलों के है फूल लगे हुए है यहाँ पर गेंदो के यहाँ --